और ब्रिज बना हुआ है। नदी फुल भरी हुई है।

ओउर पेड़ दिख रही है पहाड़ दिख रही है नदी बहुत बड़ी है।

का कलर रेड कलर का है और ये बहोत --

यहाँ पर गणपति बप्पा की मूर्ति रखी हुई है व बहोत अच्छे से तैयारी की गई है और यह --

बनाया गया है और ये बहोत लग रहा है। प्यारा दिख रहा है।

बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं। नारियल का पेड़ दिख रहा है।

बहोत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते है इस पूल को को बनाने में --

कीटाणु का मौसम था और ऊपर एक पेड़ की डाली दिख रही है कुछ लड़कियां दिख रही हैं।

चल रहे हैं और वहाँ पर सब कुछ सफ़ेद और पीला है और--